इसमें आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर की जो है इसमें आपको अं सब पड़ी हुईं हैं और-अ सामने तो आप देख ही सकते हो कि एक-अ आ स्टेज लगा हुआ है।

यहाँ आप देख सकते हो कि एक स्टेज है सामने।

देख सकते है इतना खूबसूरत मॉल है इसमें जो लाइटिंग है वो लाइटिंग काफी बेहतरीन लाइटे है साफ सफाई का धयान रखा गया है।

ये जो कपड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं कितना --

कितना लोग आपको इसमें जो है दिखाई दे रहे हैं| ये आप जो है चेक कर सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा होगा|